और मैट भी है कर्टेन्स भी है।

घर भी दिखाई दे रहा है।

प्याज भी दिख रहा है।

पीछे पर वॉल भी है।

हाथ पांव को भी दिखाया गया है।

और काला रंग भी है।

रंग भी दिख रहा है बहुत सारे वस्तु भी दिख रहा है।

वह भी दिख रहा है।

हरा रंग भी दिख रहा है।

तस्वीर में बहुत सारे व्यक्ति दिख रहा है।

फैन भी दिख रहा है।

और बहुत सारे धागा भी है।

और दरवाजा भी दिख रहा है और दरवाजा के बाहर में--